पीछे टी_वी दिख रही है न्यूज़ चल रही है जिसमें मोदी जी दिख रहे हैं क्रीम दिख रही है पीछे एक आदमी दिख रहा है जिसके बाल नहीं है व्हाइट कलर की शर्ट पहनी है खड़े हुए टी_वी देख रहा है।

व्हाइट कलर के सोफ़े दिख रहे है ऐ.सी. दिख रही है लाइट दिख रही है झालरे दिख रही है ऊपर भी बैलून्स लगे हुए हैं व्हाइट कलर की दीवाल है रेड कलर की बैलून्स लगे हुए हैं नीचे भी बैलून्स गिरे हुए हैं।

यहाँ एक स्टेज बना हुआ है जिसपे कई लोग बैठे हुए हैं एक पंडित पूजा करा रहे है एक दूल्हा बैठा हुआ है दुल्हन की मम्मी बैठी हुई है व्हाइट कलर का स्टेज है।

यहाँ एक जो इमेज दिख रही हैं जो जिसमे लोग जो गुलाल लगा के रखा हैं पिंक कलर का साभी लोगों के सिर पे कपड़ा बंधा हुआ हैं तो व्हाइट कलर के कपड़े पहने हैं एक ने रेड कलर --